ये देखिए सैलून में आज कल के बच्चे फौजी फौजी कट बहुत ही पसंद आ रहे हैं सामने ऐईना मे देख रहा है फोटो ले रहा है बगल में डब्बा में क्रीम - उरीम रखा हुआ है।

ये देखिए ये एक पार्क का व्यू है बगल में पूरे पार्क को घूमा पूरे पार्क में घूमने के लिए रेल रेल डिजाइन का गाड़ी भी दिए हुए हैं अगल-बगल पेड़-पौधे हैं बीच मे फ्लावर पौधे भी हैं और ये ट्रेन के डिजाइन से बना हुआ है इसका कलर ऑरेंज कलर का है जिसमें चार डिब्बे दिये हुए हैं।

यह देखिए सामने एक्सिस बैंक का ए.टी.एम. है जहाँ पे उसके पीछे न्यू बिल्डिंग बन रहा है जिसमें की इसी बैंक का ऑफिस खुलने वाला है नीचे बगल में गाड़ी-उड़ी लगे हुए हैं उसी के बगल में एक ऑफिस है जो कोई स्कूल से रिलेटेड है।

जिसका प्रसारण डिस्प्ले पे किया जा रहा है अगल-बगल अगल-बगल टेबुल लगे हुए है जो टेबुल में बैलून सजे हुए है।

ये किसी गाँव का व्यू दिया गया है इसी थ्रू रास्ते यहाँ से बहुत सारे गाडियाँ आते-जाते यहाँ से लोगों का जाने का रास्ता यही से पास होते हैं ।